क्योंकि में नई-नई चीजे देखने को मिलती क्यों प्राचीन चीजे जो होती थी वह बहुत ही उत्साह भरी होती थी विदेशो से लोग घूमने आते हैं यह बहुत ही विचित्र एरिया है।

और अंदर लेडीज और जेंट्स बैठे हुए है बिल्डिंग अच्छी है बादल छाए हुए है।

घर चल जाता है और अच्छी है और ये आजकल लोग बहुत खाते है इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड हो रखी है शहर में शहर में ज्यादा --

फ़ूड ट्रैक है बड़ी बिल्डिंग है बहुत सारे लोग यहाँ से आ रहे है कुछ बाइक भी खड़ी है दो चार रिक्शे भी खड़ी है और लेडीज दिखाई दे एक साडी में लेडीज है।